यहाँ एक झूला है इसमें बच्चे लोग आकर झूलते है अपना टाइम --

यहाँ जैसे की पूड़ी सब्जी--

लोग बैठते है ट्रैन में और ट्रैन उनको उनके स्थान पर पहुंचाती है।

यह एक डाइनिंग टेबल है इसमें लो परिवार के लोग बैठ कर एकत्र होकर खाना खाते है।

यह एक ब्यूटी पार्लर है इसमें लेडीज थ्रेडिंग कटिंग --

लोग इसमें बैठ कर दूर का सफर आसानी से कर लेते है।

यह एक बाढ़ है जो तेज बारिश होने से आती है जिससे लोगों की जन धन में हानि होती है ।